ऊपर में आसमान में बहोत सारे बादल दिख रहे हैं कुछ पौधे भी दिख रहे--

इसके व्हाइट कलर के गद्दे रखे हुए दिख रहे हैं।

यहा पे कुर्सी है जो लाल कलर के है।

यहां पे एक पोल का दृश्य दिख रहा है।

यहां बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ की कुछ पत्तियां दिख रही हैं।

यहां एक व्यक्ति चश्मा पहना हुआ है पीछे में दो तीन बाइक दिख रहे हैं।

ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे लड़के दिख रहे हैं।

यहा पे ऊपर मे बहुत सारे तार लगे हुए है।

यहां पे आसमान भी दिख रहे हैं कुछ लाइट जल रहा है।

यहां पे एक कैमरा लगा हुआ है उसके पीछे कुछ वायरस दिख रहे हैं।

शीशा दिख रहा है और दो हेडलाइट दिख रहा है।

यहां पे दो चेयर दिख रहे हैं जो ब्लू रंग के हैं।

आसमान में उजला रंग का बादल दिख रहा है।

यहां पे दो चिड़ियां सफेद रंग के है और तीन चिड़ियां मिट्टी रंग के हैं।

यहां पे एक पोल दिख रहा है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है।

निचे में बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं ऊपर में आसमान दिख रहा है।

कुआँ के ऊपर बहुत सारे पत्तियां दिख रही हैं।

यहां पे एक घर का दृश्य दिख रहा है घर के नीचे एक दुकान का दृश्य दिख रहा है।

दुकान के बाहर एक काले रंग का ग्रिल दिख रहा है।

कारिया के ऊपर कुछ प्लास्टिक लगे हुवे दिख रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं।

यहां एक स्विचबोर्ड है जिसके बगल में वायर्स गए हुए हैं ।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

यहां पे प्लास्टिक में भी मग रखे हुए हैं यहां बहुत सारे लोटा दिख रहे हैं।